एक गाड़ी का कलर सफेद कलर का है।

लगा हुआ है शीशे लगे हुए हैं।

सामने कुछ पाउच दिखाई दे रही है जो फोटो की सबसे आगे वाले--

उसके ऊपर मिहिर हाईलाइट दिखाई दे रहा है।

उसके पीछे एक पेड़ दिखाई दे रहा है।

और उसके पास में एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है जिसपे दीप पंजाबी ढाबा लिखा हुआ है।

शटर लगा हुआ है जिस पर दो आदमी बैठे हुए है जिनका मु ब्लर हुआ है।

व्यक्ति इसमें आगे जाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं और पानी भी दिखाई दे रहा है।

और मूर्ति पर एक हार चढ़ा हुआ है।

यह एक कमरा दिखाई दे रहा है जिस पर एक बेड लगा हुआ है।

एक गोल्डन कलर के है और कुछ ब्लैक और कुछ रेड कलर की भी।

और कुछ आदमी बैठे हुए हैं जिनके--

और उनके पास में बहुत सारी कुर्सियों का ढेर रखा--

यहां पर इस फोटो में दिखाई दे रहा है कि एक नदी है।

दो झंडी भी दिखाई दे रही है इसमें।